इन पे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी पानी की ड्रॉपस भी आपको दिख सकती है ये काफी सुंदर लग रहे है और ये एक टेबल पर रखे हुए है ।

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक पिंजरे में बोहोत सुंदर-सुंदर दो बड़े-बड़े --

यहाँ पर आप लोग देख सकते है। ये एक बोट है और जिसके उम सामने बहुत सारे पंछी उड़ रहे है।

ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर पार्किंग एरिया है खुली एरिया में जहां पर बोझोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

गर्ल्स वियर कपड़े टंगे हुए हैं। बहोत साड़ी कुर्ती वग़ैरा और अलग-अलग डिज़ाइन की कपड़े टंगे हुए हैं।

से ढका हुआ है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने मे इसमें बाहर की साइड पूरे में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है और एक बहुत सुंदर पीकॉक वाली डिज़ाइन बनी हुई है।

ये लोग आप देख सकते हैं सामने की तरफ हमें सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।